जिंदा मछली आने कि गरै चेंगा जैसी मछलियों को मारा और बेचा जाता है यहां पर बड़े मछली भी मिल जाते है।

यह एक कोचिंग सेंटर है यह कोचिंग सेंटर में बहुत सी बेंच और चेयर लगाई गई है यहां पे बहुत से विद्यार्थी बैठे हुए है।

यहां पे हॉस्पिटल जैसा इस नर्सिंग होम को बनाया गया है यह होम नर्सिंग होम लखीसराय में है।